कुछ बड़े बड़े टीन सेट है पीछे आदमी काम कर रहे हैं।

यहां पर एक घर है कुछ घर में यहां पर दुकान खोल रखी है।

पेड़ पौधे हैं बहुत सारे पीछे घर है।

यहां पर एक बैंक्वेट हाले हैं बैंक्वेट हाल में कुछ चेयर है।

पेडीकार्ड है लाइटें जल रही हैं पंखे हैं बहुत सारे कुछ सी हैं।

यहां पर दो तीन बाइक खड़ी हुई हैं कुछ कट्टे है।

लोहे से घोड़ा बनाया गया है कुछ पत्थर है पीछे कुछ पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक रोड है फाटक है यहां पर।

कुछ एक जैसी आ रही है कुछ यहां पर।

कंप्यूटर है कुछ चेयर है यहां पर टेबल है।

यहां पर एक खेत है खेत के बराबर में एक सीधा रास्ता जा रहा है।

साइड में एक घर है सामने एक फैक्ट्री है।

क्रेट में अंगूर रखें हुए हैं कुछ अंगूर को धुंधला किया गया है।

तार बधे हुए हैं घर के साइड में।

ऊपर कुछ पोस्टर लगाए हैं दवाई लिखी हुई है।

कुछ पीछे मसाले रखे हुए हैं लाइट जल रही है।

पीछे एक साइड में बाँस है।

कुछ लाइटे जल रही है पीछे एक पेट्टी रखी हुई है।

यहां पर कुछ आदमी खड़े हुए हैं जो घर की नींव बना रहे हैं ईंट पड़ी है।